और एक पीले कलर का पर्दा लगा हुआ है और सफेद टाइल्स भी दिख रहे हैं |

और ये से-चेयर्स है लाल कलर से ढकी हुई है ।

उसके बाजू मे कुछ वेंटिलेटर्स लगे हुए है ।

तथा एक टीम ने नीले कलर की कपड़े पहने हुए है।

ब्राउन कलर का स्वेटर पहने हुई है।

एक आदमी की मसाज कर रहा है मशीन से।

वहां पास में एक रेलिंग भी दिख रही है।

उसके नीचे बुक वर्ल्ड लखा हुआ है।

इसके बाजू मे कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ से हम अंदर जाते हैं |

उसके हाथ में एक नली है।